और एक व्यक्ती पियानो बजाता हुआ दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में पीछे क्रॉस के निशान भी बने हुए हैं और --

और मैदान के बीच में से एक छोटी सी सड़क भी जा रही है जिसके साइड में बहोत सारे मकान भी बने हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बहोत बड़ा पेड़ नजर आ रहा है।

तस्वीर में मुझे बहोत बड़ा मैदान नजर आ रहा है जिसके आसपास मुझे बहोत सारे पेड़ भी नजर--

इस मैदान के साथ मुझे कुछ स्टेज भी दिख रही है जिनका कलर पिच है।

इस तस्वीर में मुझे एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है यहां पे बहुत सारे ब्राउन कलर की बोरियां रखी हुई--